बैनर भी लगा हुआ है जिस पर कुछ कंप्यूटर सा सब छप कुछ छपा हुआ है।

और जो नीचे की तरफ फर्श है उस पर टाइल्स सफेद कलर के लगे हुए हैं।

यह महाराष्ट्रीय श्री पटना राजधानी औरंगाबाद मध्य से स्वागत है।

और नीचे जो मैटे लाल कलर की पड़ी हुई है।

कहीं पर पानी खेतों में भरा हुआ है।

एक महिला पीछे भी बैठी है जो सूरजमुखी के फूल बेच रही है।

और जर्नी बनी हुई है जिसमें पैरा पड़ा हुआ है ओ भूरे कलर का दिखाई पड़ रहा--

इसमें चार मंदिर है एक म सब मंदिरों के ऊपर झंडे भी दिखाई पड़ रहे है।

यह एक नदी सी दिखाई पड़ रही है जो हल्के हरे कलर की पानी दिखाई पड़ रहा है।

और यहां पर एक मशीन है जो गाड़ी जैसे धुली जाती है।

यह कुर्सी भी पड़ी हुई है ए आगे की तरफ एक बाइक भी खड़ी हुई है।

एक पंखा भी दिखाई पड़ रहा है एक लेडिस भी खड़ी हुई है जिसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है।

एक पम्प से कुछ पानी जैसा भर रहा हुआ है।

आगे एक स्टूल सा रखा हुआ है और उसपे कंप्यूटर रखा हुआ है। कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

इस तरफ एक साइकिल का हल्का टायर नजर आ रहा है और आगे की तरफ बहुत सारा कचड़ा पड़ा हुआ है।

जो ऊपर एक बैनर भी ल लगा हुआ है जिस पे न्यू ताज लिखा हुआ है।

वो आगे की तरफ एक रेड कलर की पुती हुई है और बहुत सारा कूड़ावूडा पड़ा हुआ है और लाइट्स भी जल रही--

यह एक स्विमिंग पूल सा दिखाई पड़ रहा है जिसमें गोल गोल दो लाल कलर के एक पीला हरा है इसमें पानी हल्का नीला नीला दिखाई पड़ रहा है।

जो इसमें सब कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग आते जाते भी हैं।

और टेबल पे कुछ कांच के गिलास भी रखे हुए हैं कुछ चम्मच भी हैं और कुछ प्लेट्स भी हैं और कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं जो भूरे कलर की है और--

और चारों तरफ बाउंड्री ऐसी खींची हुई है और सब मिट्टी पड़ी हुई है।

यह एक दुकान बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है जिसमें बहुत सारा सामान टंगा हुआ है।

और पुलिस वाले भी दो खड़े हुए हैं आगे मिट्टी सी पड़ी हुई है।